चित्र में बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

वो व्यक्ति पहाड़ के बीचे में बैठे हुए नजर आ रहा है।

रैक्स में अलग अलग तरह सब्जियां रखी नजर आ रही हैं।

कुछ लोग इधर उधर चल रहे हैं।

दिख रहीं हैं दो लड़कियाँ--

मंदिर के बाहर प्राचीन ब्रह्म कुंड--

छोटे बड़े पत्थर आस पास रखे हुए नजर आ रहे--

नजर आ रहा है कुर्सियां रखी हुई हैं बड़े बड़े टैंक लगा हुआ है।

बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

पिक्चर में टेबल नजर आ रहा है।

बाहर मोटरसाइकिल खड़ी नजर आ रही हैं।